और यहाँ पर एक बाइक भी जा रही है सामने एक कुत्ता भी खड़ी है और ऊपर डीजे के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है और यहाँ पे दो तीन लोग हैं जो --